से सजाया हुआ है और एक प्लेट पे जिसके साथ एक चम्मच भी है। बहोत टेस्टी है ये आइसक्रीम ।

और कुछ लोग वॉर्म कर रहे हैं। एक इंसान मोबाइल में देख रहा है और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे --

काफी अच्छी तरीके से बैठ के मुस्कुराते हुए चश्मा पहने अपनी फोटो निकलवाया है। इस आदमी के पीछे किताबे रखी है।